सामने दो काले काले बॉक्स बने है।

ये किसी मॉडल सा दिखाई दे रहा है।

और साथ मे ब्लू कलर है।

ग्लब्स हाथ का डाला हुआ है।

सामने वाली दीवार पे एक ब्लू कलर का दिल है उस पे एक तस्वीर।

सुंदर सा एक कैफे लग रहा है।

व्हाइट टेबल दिख रहे हैं जिसके ऊपर सॉसेज़ की बोटल है।

एक लंबा व्हाईट सा फ्लोर दिख रहा है।

जिसके बीच में व्हाइट पट्टी नजर आ रही है।

जो काफी सुंदर लग रही है ये येलो कलर की लाइट है।

यह माला फूलों से बनी हुई है।

उसे पे ऊर्जा सोर्स लगा हुआ है।

कांच का कुछ बना हुआ है जिसके अंदर और सामान है।

कुर्सियां बीच में शीशे का कांच का एक टेबल है।

जहां से लोग आते जाते नजर आ रहे हैं।

साइड में एक रेलिंग है ब्लैक कलर --

इस पे सीढ़ियां अंदर की ओर जा रही है और एक गेट --